वो किया जाता है जैसे में अपने --

ये हमारे चाय की दुकान है।

हाँ डांस का जो कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी की जा रही है।